मैं एक इमेज को देख री हूं जिसमें येलो कलर का बिल्डिंग है और उसमें अ सामने एक कार खड़ी है ग्रे कलर की और उस बिल्डिंग में लिखा है।

एक इमेज को देख रही हूं मैं।

रेड ब्लू कलर का यहाॅं पे ऊपर में दो बोर्ड बना है जिसमें टिक लगा हुवा है।

और एक येलो कलर का बास्केट हैं इसमें बहोत सारी मछलियां हैं।

और ये अंधेरे का टाइम है एंड छोटे छोटे ट्रीज को देख रही हूं मैं--

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें स्काई यहां पे चार कलर में दिख रहा है।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

बोरियां रखी हुई है यहां पे खुला आसमान नजर आ रहा है एंड बहुत सारे लोग--

एक इमेज को देख रही हूं जिसमें मैं पेट्रोल पंप को देख रही हूं और--

पीछे पट्टी में लिखा हुआ है एच_डी_एफ_सी बैंक ।

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें लिखा है अन्ना पंजाबी--

बगल में फैमिली ढाबा लिखा है येलो कलर की पट्टी में--

ग्रीन ग्रीन कलर की बहोत छोटी छोटी छोटी घास है एंड पौधे भी है और यहां पे एक नाली भी है।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

अ वॉल पे बना हुआ है देन बगल में लिखा है।

एंड ये कॉन्सर्ट जैसा व्यूह है एंड ऊपर से कुछ अ--

लाइट्स जैसे स्पार्कल्स नीचे गिर रहे हैं एंड पेपर्स गिर रहे हैं।

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं।